पास में कुछ ईटे रखे हुए है और मैदान के पीछे की तरफ हमे कुछ बड़े - बड़े पेड़ देखने के लिए मिलते हैं और एक इमारत भी देखने के लिए मिलती है।

यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है एक स्विमिंग पूल जहाँ पे पास में कुछ बोटेल है और चैर रखी हुई और सामने की तरफ कुछ लोग भी खड़े हुए है।

ऊपर की तरफ खुला आसमान भी दिखाया जाता है| ईमारत के सामने एक बड़ा-सा रास्ता भी दिखाया गया है।

दूर के तरफ हमें एक पहाड़ी देखने के लिए मिलता है जहा पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और सामने की तरफ हमें तलाब देखने के लिए मिलता है।

नीचे की तरह हमे बहुत सारे लोग देखने के लिए मिलते हैं जोकि अपना-अपना काम कर रहे हैं और कुछ अपने भीतर बात कर रहे हैं। दाई तरफ हमें कुछ रंगीन पेड़ पौधे भी देखने के लिए मिलते हैं।